और एक बड़ी सी टीन पड़ा हुआ मकान दिखाई दे रहा है पीछे की तरफ एक कमरा दिखाई दे रहा है।

और एक गाड़ी जाती हुई दिखाई दे रही है सामने दुकान पर बैठे हुए कुछ आदमी दिखाई दे रहे हैं और कुछ चलते फिरते दिखाई दे रहे हैं।

सामने कुछ बड़े गमले भी दिख रहे हैं जो लाल रंग के हैं।

सामने कुछ पेड़ खड़े हुए दिख रहे हैं नीचे एक पड़ी हुई कुर्सी दिख रही है।

सामने एक मकान दिख रहा है जिसमें एक आदमी खड़ा है।

जिसमे सफेद रंग के कुछ बड़े-बड़े पार्सल रखे हुए हैं।

पीछे की तरफ कुछ घर दिखाई दे रहे हैं और एक नगर पालिका की एक वैन जाती हुई दिखाई दे रही है।

सामने एक वाश बेसिन लगा हुआ है और पीछे की तरफ एक बड़ी से रेलिंग दिखाई दे रही है और एक बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में दो ट्रैक्टर खड़े हुए नजर आ रहे हैं एक ट्रैक्टर की छत हरि है सामने एक आदमी जाता हुआ नजर आ रहा है जिसने--

कुछ लाइनें खींची हुई है जो सफेद पुट्टी से खींची हुई है।

इस फोटो में एक बस स्टैंड दिखाया गया है जिसपर एक बस खड़ी हुई है पीछे की तरफ एक बस हरे रंग की खड़ी हुई है।

एक महिला के पीछे एक बैग टंगा हुआ है और एक महिला ने एक पन्नी पकड़ी हुई है।

उनको एक आदमी समझा रहा है आगे की तरफ एक बड़ा सा दरवाजा दिख रहा है।

और सामने एक बिल्डिंग पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर सेल्स ऑफर लिखा है।

एक रिसेप्शन बना हुआ है रिसेप्शन के ऊपर डैस्क कांच लगा हुआ दिख रहा है।

इसके अंदर एक दरवाजा रग लगा हुआ है जिसके ऊपर एक बड़ी सी पैंट टंगी हुई है।

नीचे की तरफ एक पेड़ खड़ा हुआ है और एक साइड में बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा है।

सामने एक टिपलर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और कुछ गाड़ियां खड़ी हुई हैं।

इस फोटो में एक बड़ा सा मंडप दिखाई दे रहा है जिसमें एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

इनमें कुछ पिलर दिख रहे हैं छोटे छोटे और कुछ पत्थर पड़े हुए हैं दिखाई दे रहे हैं।